ये चित्र एक घर के बाहर का दिखाई दे रहा है जहां का बड़ा द्वार खुला हुआ है।

गे चित्र एक डैम के ऊपर से लिया हुआ है।

वर्मा स्पोर्ट्स की दुकान है फास्ट फूड की दुकान है।

जहां प्रतिमा के पास बहोत सारी--

यह चित्र एक बड़ी सी इमारत का दिखाई दे रहा है।

बहोत से कलर की यहां लाइटें लगी हैं ये ईमारत सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

दो टेबल्स हैं टेबल्स पे स्पून लगे हैं।

के चित्र एक दुकान के बाहर का दिखाई दे रहा है।

जो कि लाल और पीले कलर की पुती हुई है इसके ऊपर ए_आई_सी_यू_एफ --

ये चित्र एक रोड का है इसमें गाड़ियों पर बैठे हुए व्यक्ति आते अथवा जाते दिखाई दे रहे हैं।

अ अलमारी बनी हुई है ऊपर लाइटें लगी दिख रही हैं।

बड़ा सारा कत्थई कलर का पत्थर--

और सीमेंटेड रोड दिख रहा है बहुत सी स्ट्रीट लाइटें दिखाई दे रही--

इस चित्र में रोड के सामने की ओर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं।

ये चित्र मस्जिद की छत का दिख रहा है।

जहां एक बड़ा सफेद मिनारा एक छोटा सफेद मिनारा--

आसपास यहां दो पार्क हैं जमीन पर घास लगी है बड़े पेड़ पौधे हैं दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ओंदी करी हुई बहुत सी बड़ी-बड़ी प्लेट --

यह चित्र एक खुले हुए हॉटेल का दिखाई दे रहा है।

वो सफेद और लाल गुब्बारों से सजा हैं इसके जीनो पर भी हार्ट वाले गुब्बारे लगे हैं।

मछलियां काली सफेद गुलाबी दिख रही हैं।

ये चित्र एक रोड के किनारे का है जहां पर दो फोर व्हीलर जाती हुई दिख रही है एक पीली और एक सफेद --

पार्किंग में बहुत सारी फोर व्हीलर यहां पर खड़ी हुई हैं।

और यह मस्जिद सर्किटों से सजी हुई दिख रही है।

बड़े-बड़े हरे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

नीचे बहुत से लोग और पंडित खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पीछे की ओर बहुत कुछ स्टीकर लगे हुए हैं।

एक सफेद छोटी टेबल पर तीन व्यक्ति खड़े हैं।

चित्र एक रेस्टोरेंट का है जहां ऊपर राजपूत रेस्टोरेंट लिखा है।